यह देखिए ये रेस्टोरेंट जैसा है जोकि देखिये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। इसकी डेकोरेटिंग जो हैंगिंग लाइट्स लटकी हुई है काफी अच्छी लग रही है।